दुकान के अंदर एक पंखा दिखाई दे रहा है एक लाइट दिखाई दे रहा है दो कुर्सी भी दिखाई दे रहा है साइड में एक हेलमेट भी दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड के बाहर में कई घर और पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

कार शोरूम में चार आदमी भी हैं और एक आदमी एक कार को साफ कर रहा है।

कई सारे छोटे बड़े फूल पौधों से सजाया गया है।

बगान मे चार आदमी है एक आदमी के हाथ मे एक कड़ाई भी है।

मूर्ति के नीचे एक आदमी खड़ा है जिसने एक घड़ी पहना है और एक काला कलर का बैग पहना है।

छोटे-छोटे बांस भी दिखाई दे रहा है।

और उसके साइड में एक खिड़की है खिड़की को पर्दे से चारों ओर ढक दिया गया है।

यह एक कोई जेल जैसा रूम है जिसके चारो ओर लोहे का गेट और रूम है।

होल में एक काउंटर है। काउंटर में एक कुर्सी भी है। कुर्सी के ऊपर एक अलबेंड लिखा गया है।

और दुकान के साइड में दो तीन कार गाड़ी भी है साइड में पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

हाईवे के बीच में एक छोटा सा दीवार है और दीवार के आगे एक बहुत बड़ा सा खंबा है।

बैंक के बाहर कई सारे गाड़ियां भी हैं और एक साइकिल भी दिखाई दे रहा है।